टाइप के कोई ईंट लगा रहा है तो कोई सीमेंट की गोनी उठा रहा--

उसके साइड में तीन आदमी खड़े हुए हैं पेट्रोल पंप के पीछे एक बिल्डिंग है।

है नेट कलर के जैसी जाली लगी हुई है डिफेंस बारियां है और डिफेंस पर्सन्स खड़े हुए लाइन में।

यह किनारा है वहां पे सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन खड़े हुए हैं एक एक साइड में गणपति की मूर्ति है।

कुछ लड़कियां मटेरियल्स का काम कर रही है डिफरेंस डिफरेंस के डिफरेंस डिफेंस टाइप के कलर --

ये एक ब्यूटी शॉप है यहां पे डिफरेंस डिफरेंस टाइप के ब्यूटी आइटम्स है।